यह कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है जो कार की प्यारी बहोत ही ज्यादा है।

और उसके सामने वाले बेंच में कोई नहीं बैठा--

उसने हाथ में एक वॉच पहनी है यह वॉच महंगी प्रतीत होती हैं उसने बा--

यह कोई फैशन की दुकान है जहां पर साथ में मेडिकल स्टोर भी है।

अह ऊंचाई प्राप्त की है मतलब वह सब चीजों में--